इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग को काफी खिड़कियां दिखाई दे रहीं हैं और उसके कवलींग का कलर है कतिया उस- उसके सामने दो पुतले हैं।

चित्र में एक आसमान दिखाई दे रहा है आसमान मैं तीन चार कलर दिखाई दे रहे है काफी बिल्डिंगे खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र मैं एक आसमान दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और बिल्डिंग कलर है सफेद।

इस चित्र मैं एक आसमान दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मैं अम वो सफ़ेद काला आकाश दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे एक शोरूम दिखाई दे रहा है। शोरूम के अंदर चप्पल जूते लगे हुए हैं। एक आदमी खड़ा है। और वहाँ आदमी एक कस्टमर है ऐसा प्रतीत होता है।

इस फोटो मे एक अ बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग उपे अ बिल्डिंग को दो खिड़की दिखाई दे रही है।

और बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा बैनर दिखाई दे रहा है धन्यवाद्।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

आ हरे कलर की खिड़की हरे कलर की खिड़की एक दिखाई दे रही है और नीचे के मंजले में भी हरे कलर की चार खिड़कियां दिखाई दे रही हैं नीचे ऐटो बस खड़ी हैं और लोग दिखाई दे रहे हैं और एक सड़क है धन्यवाद।

मे नीला आकाश दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक आसमान दिखाई दे रहा है सामने में एक म-अ--